किनारे पर दो-तीन बोट नाव खड़ी है जो की नीली कलर है और लाल कलर है नीले कलर में कुछ गोल-गोल पड़ा है और पानी काफी साफ है।

ये एक स्विमिंग पुल है जहाँ पे देखेंगे काफी साफ सुथरा स्विमिंग पूल है और ब्लू कलर का है नीचे पानी की अंदर ब्लू कलर की --

तो एक ब्रिज बना हुआ है उ काफी बड़ा ब्रिज है और राइट साइड देखे तो एक दो घर दिखेंगे घासे निकली हुई है एक आदमी सीढ़ी पे बैठा है।

यह एक स्पोर्ट्स की शॉप है स्पोर्ट्स की दुकान जहाँ पर देखेंगे एक येलो कलर की अलमारी बनी हुई है खंड-खंड वाली जिसमें काफी सारा समान रखे हुए हैं।

आगे तक लगी हुई है और लेफ्ट राइट दीवारों में टाइल्स लगी हुई है नीचे देखेंगे तो कुछ नीचे भी टाइल्स लगी है सामने रूम बने हुए हैं बोर्ड लगा है वाइट कलर छोटा --

राइट साइड भी पेड़ लगे हैं और काफी सारे घर और बिल्डिंग दिख रही है यहाँ से बीच में खंबे भी लगे हैं।